इस दृश्य में बहुत सारे लोग सामने की ओर दिखाई दे रहे हैं जो शायद योगा कर रहे हैं।

यह किसी इलेक्ट्रिक शॉप की दुकान लग रही है जिसमें कई सारे कूलर कई सारे फ्रीज सामने की ओर दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें सामने की ओर एक मोर भी बना हुआ है और एक नीम का पेड़ नजर आ रहा है।

सामने की ओर एक दीवार है जो बड़े बड़े पत्थरों को काट के ही बनाई गई है।

सामने की ओर एक दीवार दिख रही है जो पेंट की हुई दिखाई दे रही है।

चौकी लाल कलर की है जिसके ऊपर बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं।

यह दृश्य किसी बड़ी सिटी का दिखाई दे रहा है जो शाम के टाइम का है इसमें सूरज लाल सा दिख रहा है।

जिसमें सामने की ओर बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड पर एस_आर मोटर्स कार केयर होम लिखा हुआ है।

जिसमें कई प्रकार के प्रसाद सामने दिखाई दे रहे है लड्डू दिखाई दे रहे हैं पर नारियल भी दिखाई दे रहा है।

गेट के सामने ही एक टीन शेड बना हुआ है टीन शेड में टॉवल पड़े हुए हैं।

टीन शेड के नीचे एक कार और एक बाइक नजर आ रही है।

इसमें कई सारी कुर्सियां पड़ी हुई है जिनमें बैठने की पूरी व्यवस्था है।